अंदर हमें कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

साथ ही हमे कुछ मूर्तियां नजर आ रही हैं।

हमारे साथ ही एक व्यक्ति खड़ा नजर आ रहा है।

एक चबूतरे जैसा बना हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने कुछ रैक बने हुए है जिन पर कुछ बॉक्सेस नजर आ रहे है।

बहोत से सीधे पेड़ भी यहां पर हमें नजर आ रहे हैं हमारे सामने कुछ काले रंग की गायें--

सफेद रंग के जोड़े में दूल्हा दुल्हन बैठे नजर आ रहे हैं।

ऊपर हमें कुछ चट्टान और बड़े पेड़ नजर आ रहें--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

पंडाल पर बहुत से रंगों से सजावट किया गया है यहां हम बहुत से लोगों को देख पा रहे हैं।

एक रोड दिखाई दे रही है।

साथ ही सामने एक कमरा नजर आ रहा है।

जिन्हों ने ऑरेंज कलर की टी शर्ट और टोपी पेहन रखी है।

बीच में कुछ लाइटे नजर आ रही है।

एक बड़ी से मॉल को देख रहे हैं।

यहा हमे कुछ लोग भी नजर आ रहे--

यहां पर हम सामने कुछ लोगों को देख रहे--

पीछे हमे कुछ सफेद रंग के चेयर्स दिखाई दे रहे है।

सामने सफेद रंग की बड़ी बड़ी मशीने लगी हुई है।